सामने एक हॉल रूम दिखाई दे रहा है दीवार पर एक घड़ी लगी दिखाई दे रही है।

सामने एक का बरामदा नजर आ रहा है जहा बच्चे नीचे जमीन पर बैठ कर कागज द्वारा ऐक्टिविटी करते दिखाई दे रहे है।

मालाएं रस्सियों द्वारा लटकाई दिखाई दे रही है कुछ आदमी बैठे नजर आ रहे है।

सामने एक स्टेज बना हुआ दिखाई दे रहा है स्टेज के साथ दो सीढ़ी लगी हुई दिखाई दे रही है दो लड़के सामने खड़े नजर आ रहे है कुछ लोग फूलों की सजावट करते हुए दिखाई दे रहे है।

कुछ लोग नाच करते हुए नजर आ रहे लोग खड़े होकर उनकी तस्वीर निकालते हुए दिखाई दे रहे है।

सामने एक गेरेज नज़र आ रही है। गेरेज में एक कई सारी गाड़ियाँ खड़ी नज़र आ रही है। एक गाड़ी को एक मैकेनिक बनाता हुआ नज़र आ रहा है।

बड़ी गाड़ी के चक्के खोल कर नीचे जमीन पे रखे नज़र आ--

एक औरत माइक पे कुछ बोलती नजर आ रही है एक औरत और तीन आदमी चेयर पे बैठे नजर आ रहे है।